एक दीवार के ऊपर एक कागज चिपका हुआ है उसके पी--

उसके ऊपर एक साइकल लगी हुई है उसके पास कुछ पाइप गिरे हुए है उसके पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए--